बेहद खूबसूरत एक बैंक का इमेज दिखाया गया जो वाकई में बेहद खूबसूरत है और बहोत लम्बी-चौड़ी --

कमियों को पूरा करते हैं हमारे सरकार जो --

उम खरीदी जा सकती है क कम दामों में मिलती है इसके लिए ये दूकान म में कोई ऐसा --

क्यूंकि देखने में बेहद सुन्दर लग रहा है ये घर।

हर एक इंसान आते है और ये जगह पे मस्ती करते है क्योंकि बेहद खूबसूरत --

की मतलब ढलाई अच्छे की डिज़ाइन की गयी है जो की वाकई में बेहद खूबसूरत हैऔर देखने में --

लोग दूर-दूर से मिठाई तरह-तरह के लेने आते है जो स्वादिष्ट होते है।